यहां पर एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है जिसका रंग व्हाइट और ब्लू है।

एक बाल्टी भी दिखाई दे रही है जिसका रंग गुलाबी है।

एक बाइक और एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है और यहां पर टीन भी पड़ी हुई--

ऊपर बहोत सारी ए_सी भी रखी हुई है और यहां पर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर एल_जी का पोस्टर भी लगा हुआ है और यहां पर फ्रिज भी रखी है।

एक शटर लगा हुआ है और यहां पर एक टीन भी लगी हुई है।

यहां पर छत बनाई जा रही है और यहां पर बहोत सारे आदमी खड़े--

और यहां पर एक मोटरसाइकल खड़ी हुई है और यहां पर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और यहां पर एक पेट्रोल पंप भी बना हुआ है।